एक आदमी नीचे पत्थर--

दो लड़के केक बना हुआ दिखा रहे हैं।

साथ काफी बड़े हरे भरे वृ--

कोठी बनी हुईं हैं इसमें टू ए_सी --

होटल में टेबलस --

इन सब ने अपनी चप्पल उता--

इसका कांटेक्ट नंबर जीरो वन सिक्स --

गुरुमान एग्रो कल्चर की शॉप है।

एक प्लैटिनम बाइक भी खड़ी है साथ ही सुखा--